यह एक मॉल है जहाँ पर कपड़े मिलते हैं और यहाँ पर बहुत से व्यक्ति कपड़े खरीदने के लिए --

फेड़ भी लगे हुए हैं और एक मंदिर बना हुआ है लोग मंदिर रोज शाम को जाते है।

औ कुछ कारीगर छत पर भी चढ़े हुए हैं और घर बना रहे हैं।